कुछ टॉवेरें भी दिख रहे है।

यह लग रहा कोई स्कूल है और यहाँ पर कुछ बेंच भी लगी हुई है।

यह लग रहा कोई दुकान है और यहाँ पर बहुत सारी चीज खाने की रखी है।

बहोत सारी मॉल है।

बहुत सारे पैकेट्स रखे हुए है पैकेट्स के अंदर तरह तरह के चीजे है और एक--